बना हुआ हैं देखने में मुझे बहुत स-स सारे सुंदरे ही लग रहा हैं।

कॉलेज भी बना हुआ है। उस कॉलेज में जंगले भी हुआ है। दरवाज़ा भी बना हुआ है। खड़ा हुआ है।